आगे चलकर एक सीढ़ी रखी हुई है सीढ़ी के पास एक टेबल रखी हुई है और बाजू में एक टेबल और रखी हुई है ।

और इस साल का कलर वाइट कलर का है नीचे आधी दीवार ग्रे कलर की दिखाई दे रही है ।

यहां पर एक प्यारी सी सुंदर सी बकरी बैठी हुई है और उसका बहुत ही सुंदर--

कलर दिखाई दे रहा है काला और सफेद कलर की बकरी इसका सर सफेद कलर का है और चारों तरफ--

एक पर्पल कलर का रखा हुआ है एक गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी हुई है ।

यहां पर सामने एक सफेद कलर की कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है कार कार को बहुत सुंदर फूलों से सजाया गया है ।

शादी में ले जाने के लिए सामने गुलाबी कलर के उसमें गुच्छे फूलों का गुच्छा लगा हुआ है और ऊपर कार के--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

और एक औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसने वाइट कलर के कपड़े पहने हैं पास एक आदमी भी खड़ा है वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं ।